ये फोटो जो ये चूल काटने का दुकान का है।

और इधर में एक ठे सामने में एक ठो मशीन है जिसमें लिखा है साईलेन पॉवर और वो ग्रीन कलर का है।

ऊपर ऊपर में पंखा लगा के हैं।

वो लोग बम्बू काट रहे है लग रहा है पीछे में बम्बू का पेड़ है ये सब दिखाई दे रहा है।

ये फोटो दुकान का अंदर का है जिसमें अंदर में ये नेकलेस ये सब रखा है।

पीछे मे भी लाइट ये ऑरेंज कलर मे थोड़ा जल रहे और ये जो शीशा का अंदर रके।

खिड़की दिख रहे है जो दोनों बंद हैं आगे में फ्लावर पॉट ये सब दिखाई दे रहा है।

ये भी दुकान का है जिसमें अलग अलग कम्पनी का कुछ स्पीकर भी रखे हैं।

साइड में बहुत ज्यादा इयररिंग रखा है अलग अलग कलर का--

ये फोटो एयरपोर्ट का है जिसमें एक ठो एरोप्लेन दिखाई दे रहा और अपना प्लेटफार्म --

ऐ फोतो में ये पिलर लोग खड़ा कर के है जिसमे कुछ अलग-अलग डिजाइन में खड़ा किया है।